न्यू है यहां पर काफी सारी मंदिर की पूजा का सामान रखा गया है।

यहां पे साइडों में कार्टून बने गए कार्टून बनाए गए हैं यहां पे एक ब्लैक कलर के वायर भी लगी हुई है।

यहां पर एक ऑफिस है जिसके अंदर काफी सारी ब्लैक कलर की चेयर बिछी गई है और यहां पर ट्रांसपेरेंट --

किट लगाया गया है कवर लगाया गया है व्हाइट कलर के फुलों से काफी सुंदर डेकोरेशन की गई है।

इस समय यहां पर कुछ बच्चे है जोकि एक्सरसाइज कर रहे है।

यहां पर सब कपड़े बॉक्सेस में लगाई गई हैं।